सफेद और पिंक कलर की स्कूल यूनिफार्म पहनी है।

यहाँ पर जिम है और जिम पर एक्सरसाइज करने वाली--

एक बत्तख का चेहरा ऊपर की साइड पर है एक बत्तख का चेहरा पानी में डूबा हुआ है उसकी चोंच --

कलरफुल कलर से कलर किया गया है डिज़ाइन बनाई गयी है।

दरवाजे के सामने कुछ चप्पलें रखी है बाहर एक टेबल रखा हुआ है।

और बाहर के साइड कुछ लोग बैठे हुए है ऊपर पेड़ दिखाई दे रहे है ।